सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

पेड़ भी नजर आ रहे हैं।

हमें एक नहर भी दिखाई दे रही है।

आस पास हमें खेत दिख--

हमें लोग नजर आ गए।

बाइक नजर आ रही--